पीछे में सिर्फ टिन टिन नज़र आ रहे है।

कैंटीन के तरफ बहुत बड़ी गोदाम --

और यह किसी बड़े होटल रेस्टोरेंट का पार्किंग जोन --

जो बाहर एक गाय है पानी है यहाँ पे और ये कल्याण मंडप शायद यहाँ पे मंडप है।